पे बहोत ही सुंदर तरीके से कुछ बच्चे और बच्चियां शायद।

वो आईने में ले रहे हैं पीछे पोस्टर्स ल--

और ऊपर तक यह बहोत ही सुंदर लग रहा है।

में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई नजर आ रही हैं।

और काफी यहां पे पूजा पाठ है किया जा रहा।

सा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है जहां पर हमें एक व्यक्ति फोटो से--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

बड़ा सा घर है जिसके बाहर वाले ग्राउंड में इतने सारे मशीनस ट्रैक्टर्स ऊपर से धान काटने वाले ये कुछ--

ऊपर से नीचे तक हमें खिड़कियां दरवाजे दिख रहे हैं नीचे एक जगह--